और एक रेड बस है और एक बस का नाम रान्ज्हंस है ।

ये भी एक सलून है यहाँ पे भी बहोत सारा मिरर लगा हुआ है और एक वहाँ का स्टाफ एक इंसान आदमी का मसाज - वसाज कर रहा है और ये सलून बहोत अच्छा दिख रहा है साफ़-सुथरा --

ये लगता है किसी चीज का ऑफिस है यहाँ पे तिन लोग बैठे हुए हैं दो जेंट्स हैं एक जेंट्स है दो लेडीज हैं और एक जेंट्स है जो इधर साइड बैठे हुए हैं ऑफिस के मैनेजर जगह पे और एक लेडीज कुर्सी पे बैठी हुई है रेड कलर का कुर्सी पे और इधर सी.सी.टी.वी. कैमरा ऑन है ।

शाम का समय दिख रहा है फोटो में।